प्रतिमा लगी हुई है और काई सारे लोग बाहर और अंदर भीड़ जमाए हुऐं हैं।

यह एक परिवार है जिसमें ये लोग छठ पूजा में जा रहे हैं।

यह एक जिम की तस्वीर है जहां पर एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है।

यहाँ पर काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक संस्था वाले उनकी मदद करने आये है।

यह आदमी मछली बेच रहा है मछलियाँ मरी हुई हैं।

यहाँ एक नदी किनारे का सीन है जिसमें एक लड़का बैठ कर अपना फोटोशूट करवा रहा है।